तरह-तरह के रंग किए गए है इन मिट्टी की चीजो में भगवान जी की मूर्तियां और बहोत सारे फूलों वाले गमले वगैरह भी है।

वो फूल रंग बिरंगे हैं। इस मंदिर के बाहर एक फूटपाथ भी है और आस पास हरे भरे वृक्ष भी हैं।

यह व्यक्ति मोबाइल फोन लेकर शीशे में अपनी तस्वीर ले रहा है। इस कमरे में और भी बहुत सारा समान रखा है।

इस झील के पास एक बड़ी सी प पत्थर की चट्टान भी है और कुछ व्यक्ति भी हैं।

इस तस्वीर में कुछ बच्चे दिख रहे हैं। जिनके सामने बेंच पर कुछ बड़े -बड़े कागज की शीट्स रखी हुई हैं।

इस पारक में बहुत सारे बच्चे झूलों पर खेल रहे हैं इस पार्क में छोटी छोटी घाँस की झाड़िया भी हैं।

इस तस्वीर मे बहोत सारी बच्चिया एक कमरे मे योगा कर रही हैं। इस कमरे मे एक व्यक्ति भी है जो बच्चियों को योगा सीखा रहा है।

भी है जिनके सामने बहुत सारे लोगों कि भीड़ भी जमा है|